यहां पर मुझे एक बाल्टी दिखाई दे रहा है यहां पर मुझे तगाड़ी दिख रही है जहां पर मुझे रेवता दिखाई दे रही है जहां पर एक आदमी ने सफेद पेन्ट काली शर्ट पहेन रखी है।

यहां पर अच्छे कैमरे लगे हुए दिखाई दे रहे है जहां पर मुझे अच्छी सी बोटले दिखाई दे रही है जहां पर एक लोग चाय देते हुए दिखाई दे रहा है यहां पर मुझे कुछ अच्छी तरह--

लड़की डांस करते हुए दिखाई दे रही है जहां पे देखा जाए तो स्टेज बोहोत अच्छे से अच्छी सजी हुई है जहां पे देखा जाए तो बोहोत अच्छी टावल दिखाई दे रही है यहां पर लड़की ने लाल कलर का लहंगा पेहन रखा है।

यहां पर मुझे बोहोत बड़ी दुकान दिख रही है यहां पर दुकान मे अच्छी अच्छी लाइट लगी हुई दिखाई दे रही है जहां पर बोहोत सारी सायकल दिखाई दे रही है।

यहां पर कुछ लोग सायकल चलाते हुए दिखाई दे रहे है यहां पर मुझे रंग बेरंगी सायकले दिखाई दे रही है जहां पर अच्छी जमी हुई सायकले दिखाई दे रही है।